मैं पुल का पानी ग्रीन कलर का हो चुका है।

छोटे छोटे घास भी हैं।

बहौत सारा बिल्डिंग है इसमें हम देख सकते है लगे हुए है।

फ्लावर पोत कुछ पेड़ भी लगाए गए है छोटे छोटे कर के।

मेन गेट ठीक उसी के सामने एक गणेश जी की मूर्ति भी है जहां पर वह लोग पूजा करते हैं।

और एक ब्लैक वाइट बोर्ड में इंटेल कर के लिखा हुआ है।

ये मैकेनिक का शॉप है।

यहां पर एक हमें दिख रहा है कि रेड कलर का गाड़ी है उसको ठीक करने के लिए यहां पर लाया गया--

ये बहोत बड़ा बिल्डिंग है।

उनके दरवाजे भी ग्लासेस के है।

एक जा रहा है सीधा सामने और एक उधर से इधर आ रहा है।

जेरोक्स करके साइन बोर्ड भी है और स्ट्रीट लाइट भी एक दिख रहा है।

यह बिल्डिंग है वाइट कलर का।

एकदम बिल्डिंग के सामने वाले सामने एक बहुत बड़ा करके पेड़ है।

यहां पर हम देख सकते कि तीन मुर्गियां है।

उसके पंखे भी बहुत बड़े बड़े हैं।

चर्च मे है यह फोटो चर्च में खींचा गया है।

यहां पे दिख रहा है कि जी जीसस है सामने।

कुछ मिनिस्टर्स के गाड़ी होंगे बहोत सारे लोग जमा हुए है।

टमाटर भी दिख रहे हैं गाजर बहोत सारे हैं बैगन भी है।

बहोत सारे पेड़ भी है।

घास भी है एण्ड लेफ्ट राइट साइड के साइड में ओ ब्लू कलर के नेट पे कुछ रखा हुआ है।

ये एक फोल्ट्री फॉर्म है।

एक चार दिख रहा है।

पोल्ट्री फार्म के अंदर बहोत सारा पोल्ट्री है दिख रहा है हमें--

यह बिल्डिंग बहोत बड़ा है।

एक बोर्ड भी दिख रहा है ब्लू कलर का।

यह फोटो एक मन्दिर में खींचा गया है।

हमे हम देख सकते है दो सुअर है पिंक कलर के और तीन भी देख सकते हैं।

पीछे हरे हरे घास भी देख सकते है।

इसमें बहोत सारे आदमी दिख रहे--

फोटो के पास में दो चप्पल्स ग्रीन कलर का एक कारपेट दिखा कारपेट बिछा हुआ है।

स्ट्रीट लाइट भी है वहां पर--

जिसमें रेड कर्टेन दो लगाए हुए हैं।

दुकान के ऊपर में लिखा हुआ है चंद्रा--

और कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है।

रूम है येलो कलर की।

और चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है।

चिप्स भी बहुत सारे हैं बाजार के बैक्से बहुत सारे हैं।

अपने दूल्हा दुलहन भी बैठे हुए हैं।

पंडित जी दो है इनके सामने अह बहु--

बहुत सारे पेड़ ग्रीन कलर के भी हैं।

यहां पर ट्रक दिख रहे हैं बरे बरे एक दो--

पे बहुत बड़े बड़े गाड़ी भी है बहुत सारे--

यह बहुत बड़ा रास्ता है।

बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे जन दिख रहे हैं।

व्हाइट शर्ट में भी है।

पिंक कलर शर्ट पहने हुए बेग बैग ले के ट्राली ले के आदमी जा रहा है।

इस रूम का दोर वगैरा है पर्पल कलर का।

यह एक कॉस्मेटिक की दुकान है।

ये एक छोटा सा मॉल में फोटो खींचा हुआ यह फोटो जहां पर लड़कियों के चीजें मिलते हैं।

जब बहुत सारे मिलके इस स्पेसिफिक फोटो में बस लड़कियों के सामान दिख रहे लाइक कुर्ती वगैरा बहुत सारे कलर के--

ऊपर में लिखा हुआ है मेडिटाऊन ।

और कुछ हो जाए बैंडेज वगैरह जो कुछ भी चाहिए होता है फिर यहां से लेकर जा सकते हैं।